कितने हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों के सामने इतनी ऊंचाई एक पहाड़ --

इतने सारे रंग-बिरंगे बनून से सजी नए ऑफिस जिसकी कलर पूरी येलो कलर की की हुई है।

और एक महिला सबको योगा करना सीखा रही है।

बाइक सबको जगह से से रखवा रहे है।

उड़ने की कोशिश कर रही है और काफी जगह-जगह में छोटे छोटे से आइलैंड जैसे बना हुआ है।

आ वह ये नज़ारे देखने के लिए कुछ लोग खड़े होकर देख रहे और कुछ लोग --

दुकान है जिसके सामने कुछ बड़े और कुछ नौजवान लड़के खड़े हो कर अपनी --

ये एक छोटी सी कैफै के दुकान है जिसमें दो बेंच रखे हुए हैं और कुछ चेयर्स रखे हुए हैं।

अच्छा लग रहा है ये जिस जिसके घर में जाएंगे उस घर की रौनक बढ़ जाएगी।

कितने अच्छे ये लग रहें हैं जैसे लग रहें है। दुकान की सारी फूलें यहाँ पर लग गए हुए हैं।

पूछने की कोशिश कर रहे कि कैसे क्या बनाया जा ।

और कुछ चेयर भी लगे हैं जो गोल्डन और वाइट कपडों से ढकी हुई है।

और एक ऐसा एक एटीएम है जिसमे कभी भी हम लोग रूपये निकाल सकते है जरुरत के हिसाब से --

जलेबियाँ जिसको देखते ही लोगो के मुँह में पानी आ जाती है। ये काफी स्वादिष्ट होते है खाने में।